पौधे लगाए गए हैं यहाँ पास और रंग- बिरंग कलर किए हैं और--

पानी में मछली रहते हैं कछुआ रहते हैं मगरमच्छ रहते हैं।